मैं देख पा रही हूं कि एक बस स्टेशन है जो कि एक पुराना सा बस है।

और उसमें बिस्किट रखा हुआ है काउंटर में।

एक मंदिर लटका हुआ है और लाइट बॉल भी लगी--

और एक मकान है जो की व्हाइट कलर का है।

मैं देख पा रही हूं कि एक चाय का दुकान है।

मैं देख पा रही हूं कि एक लंबा सड़क है और उसके आस पास कुछ दुकान भी है।